अंदर एक ग्रीन कलर की डस्टबिन लगी हुई है।

यहां पर सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगा हुआ दिख रहा है।

रोड के दोनों साइड बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

सामने रोड पर ऑटो बाइक एवं कार नजर आ रहे हैं।

ग्रीन टेबल के बगल में एक वुडन चेयर रखी हुई है।

यह पिक्चर किसी रेस्टोरेंट के अंदर का लग रहा है।

इस रेस्टोरेंट के सीलिंग को बहुत ही कलरफुल लाइटों से सजाया गया है।

यहां कुछ सोफा एवं टेबल लगे हुए हैं।

इस फोटो के राइट साइड में एक लाइन से अशोक के वृक्ष लगे हुए दिख रहे हैं।

इस कॉरिडोर में चार दरवाजे दिख रहे हैं जिन्हें येलो पेंट किया गया है।

यहां सामने एक दीवार दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे पौधे एवं घास लगाए गए हैं।

तथा इस किले के ऊपर जंगली पौधे एवं घासे जमी हुई दिख रही है।

यहां सामने दो गेट दिख रही है जोकि ब्लैक कलर की है।

यहां ऊपर एक वाइट कलर की बोर्ड लगी है जिस पे एलीट गेस्ट हाउस लिखा है।

इसके पीछे एक वाइट कलर की बाउंड्री की गई दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ कार रिक्शा एवं बाइकें भी दिख रही हैं।

यहां पर बहोत सारी मछलियां रखी हुई दिख रही है।

यहां बहोत सारे बेंच एवं टेबल रखे हुए हैं।

जहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है।

जिसके अन्दर दो ब्लैक कलर की कप में कॉफी रखे हुए हैं।

तथा इस ट्रे के बगल में एक मेनू कार्ड भी दिख रहा है।

और इसके बगल वाली बोर्ड में बंधन बैंक लिखा है।

यहां लेफ्ट साइड में ऊपर के_एफ_सी लिखा हुआ है।

यहां पर एक बूढ़े व्यक्ति खड़े दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक व्यक्ति फोटो क्लिक करवाते नजर आ रहे हैं।

जिन्होंने ब्लैक कुर्ता एवं येलो दुपट्टा पहन रखा है।